चित्र में एक व्यक्ति एक छोटी सी दुकान में बेेठा हुआ नज़र आ रहा है।

इस दुकान में बहुत सारा सामान रखा है जैसे की किताबें पेंसिल ज्योमेट्री इत्यादि| ये सब देखकर ऐसा लग रहा है की जैसे ये एक स्टेशनरी की दुकान हैं।

यहाँ एक औरत अपने बाल कटवा रही है और इस सैलून के दो कारीगर अपने काम में व्यस्त नजर आ रहे हैं।

अलग-अलग रंग और प्रकार के हैं जो की बहोत ही सुंदर दिख रहे हैं। इस नदी के आसपास घने बड़े पेड़ भी लगाये गये हैं।

यहाँ पर सजावट के लिए कपड़े और फूलो का इस्तेमाल किया गया है यहाँ लोगो की अधिक मात्रा में भीड़ भी जमा हुई है।

ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे किसी समारोह की तैयारी चल रही है।